और बहुत बड़ी चर्च है तीन चर्च के लगाए हुए है बाज़ू में हरे भरे फूलो के बहुत सारे पौधे है और अच्छे कलरफुल दिख रहे है च--

ने के लिए सीढियाँ भी है ओपन डोर हो कर है छोटे-छोटे खिड़कियों से बहोत अच्छा बनाये हुए है झाड़ा बहोत द गच्छ रहे है आसमान बहोत अच्छा दिखक रहा है।

यहाँ बहोत बड़ा रोड और फूलो का मार्केट है वहाँ पर एक आदमी गाड़ी ले कर आ रहा है दूसरा आदमी गाड़ी ले कर जा रहा है वहाँ पे एक ऑटो भी जा रहा है।

एक औरत फूला लेने के लिए खड़ी हुई है | यहाँ फूल के हाराम बहोत बड़े लगे हुए है वहाँ पर एक आदमी बेचने के लिए ठेहरा हुआ है गुलाब के बहोत बड़े अच्छे फ्लावर्स के हा--

यहाँ एक बोहोत बड़ा खेत हैं उसमे पानी भड़ा हुआ हैं वहां से एक वायर लटकती हुई दिख रही हैं वहाँ आजु-बाजु बोहोत से झड़ हैं नील कलर हरे कलर का बुलु कलर में आसमान दिख रहा हैं।